जिनके किनारे किनारे कई महिलाएं बच्चे सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं तथा छोटे बच्चे इनके आसपास घूमे हैं।

बगल में पेड़ लगे हुए हैं और एक महिला भी है।

इसमें कई वाहन सफेद कलर के कार हैं तथा एक बीच में टेंपो भी है।